सीडी भी लगी हुई है रेड कलर की एक स्लीप बनी हुई और एक साइड सीडी लगी हुई ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है एक लेडिस आ जा रही है उसके बच्चे को पकड़ के ब्लैक कलर का बुर्का पहन के।

ये जिम करने वाली जगह है जिसमें एक रनिंग करने वाली मशीन है ये एक व्यक्ति उसपे खड़ा हुआ है और एक मशीन खाली पड़ी हुई है।

और नीचे भी फूल लटक रहे है फूलोसे सजाया हुआ है इस मन्दिर को पत्थरों से बनी हुई चठ्ठाने है इस मन--

यहा बहुत सारी छीजे दिखाई दे रही है। पत्थरों से बना हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है यहा लोग गुमने के लिए आते है।

आयट साइट पटरी टाइप में भी बने हुए है रोड है और बीच में हरी दुवा लगी हुई है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहे है दो व्यक्ति जाते हुए भी दिखाई दे रहे है.

लगी हूं गांमन पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं लंबे-लंबे खजूर के पेड़ लग रहे हुए पेड़ों पे व्हाइट एंड रेड कलर की पट्टी लगाई गई हुई है।